यहाँ एक बर्थडे पार्टी हो रहा है और एक एक लेडी एक बेबी को लेकर खड़ी है।

यहाँ पहाड़ है और पहाड़ के बीचो-बिच एक लड़का और एक लड़की खड़े है और लड़की ने शॉक्स पेहना हुआ है जोकि लू --

और व्हाइट कलर का है और लड़की शार्ट ड्रेस पेहनी है और अपनी माथे पे चस्मा लगायी है और लड़का व्हाइट कलर का कैप पहने हुए --

यह एक फील्ड है और फील्ड में एक बाइक खड़ी है और फील्ड के चारों तरफ --

उसके बगल में हरे-हरे कुछ लगे हुए हैं और वहां उसमे ताड़ के पेड़ हैं खेत में।

यहाँ एक नदी है। जिसमें बोहोत बड़ा हाथी है और उसके हाथी के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो हाथ में डंडा लिए हुए हैं और --

यहाँ एक रोड दिख रहा है और रोड पे एक ऑटो चल रही है जिसपे एक आदमी बैठे हुए है और उसके आगे दो बस खड़ी है।

यहा एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम राज मानी --

एक जेंट्स सैलून है और --

बोर रखे हुए है आलू प्याज लहसुन --

उसके आगे एक कुत्ता --

और इसमें हर एक प्रकार की चीज़े हैं।

लिंग के बहार एक बहोत सारा बल्ब --

और उधर एक ऊंट भी दिख रहा है।